यहां हमें मास्क पहने हुए लोग दिख रहे हैं जिसमें--

यहां हमें एक बड़ी सी मंदिर नजर आ रही है मंदिर के सामने कुछ मूर्तियां हैं।

और सड़क के उस पार एक ट्रक आती हुई दिख रही है।

और एक फैन दिख रहा है और कुछ टेबल चेयर्स --

पीछे एक माल ट्रक दिख रही है और पेट्रोल पंप के सामने एक टेबल लगाया हुआ है।

एक वो बल्ब लगा हुआ है और उसके साइड में कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं।

और बिल्डिंग के साइड में कुछ तरकत लगे हुए दिख रहे हैं।

हमें यहां एक आदमी नजर आ रहा है और एक ए_सी --

यहा हमे एक दुकान दिख रही है दुकान का नाम माय बुक लिखा हुआ है।

पिंक और स्किन कलर के कॉन्बिनेशन से लगाया हुआ है।

दोनों ने ब्लू कलर की जींस पहनी है और ये दोनों--

यहां हमें एक लड़का ठहरा हुआ दिख रहा है जो येलो कलर का टी शर्ट --

लगाए हुए दिख रहा है और यहां पे कोई लड़कियां और कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैं।

यहा सायद किसी की शादी हो रही है और हमे यहा कुछ लोग चेयर्स पर--

यहाँ पे कुछ कुठए भी दिखाई दे रहे है और इनके साथ में ही लोहखंड के भी पाइप दिख रहे है और इनके नीचे ग्रीन कलर का --

और उसके सामने दो गाड़ियां ठहरी हुई दिख रही है।

और एक छतरी भी नजर आ रही है जिसका कलर येलो है और छतरी के नीचे कुछ अ--